साथ जानवर टाइप के दिखाई दे रहे हैं जो की लकड़ी के पेड़ पे खड़े हुए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं |

यहाँ पे मुझे सब तरह से बना हुआ घर दिख जैसे दिखाई दे रहा है जो की बहुत ही पत्थरों से बना हुआ है यहाँ |

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मुझे कुछ कारें खड़ी हुई गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

जिन्होंने अलग-अलग तरह की कॉस्टयूम पहनी हुई हैं।